गाछी लगी हैबहुत अच्छा लगता है मकान तकान बन रहा है साफ सुथरा भी है देखने में भी अच्छा लगता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है।